तस्वीर में मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे दो घर दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में मुझे कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में मुझे एक टेबल दिखाई दे रहा है।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

तस्वीर में मुझे दो बेड दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में मुझे एक झूमर दिखाई दे रहा है।

वीर में मुझे एक बाइक दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा हैं।

यहां मुझे कुछ स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है।

तस्वीर मे मुझे बहोत सारे लोग दिखाइ दे रहे है।

तस्वीर में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ मैदान दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे एक किला दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे एक चट्टान दिखाई दे रही है।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

तस्वीर में मुझे एक घड़ी दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारी मशीन दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक शिशा दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

वीर में मुझे रानी लेडीज टेलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।